साइड में एक हेलमेट भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक वाटर पार्क का फोटो दिखाई दे रहा है।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

आसमान भी दिखाई दे रहा है और पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एक होटल के रिसेप्शन की फोटो दिखाई दे रही है जिसका नाम होटल प्रीति है।

एक क्रेट में भी बहोत सी मछलियां रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

पीछे कुछ लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं और एक पिकअप भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

पीछे खिड़कियां बनी हुई दिखाई दे रही हैं जिस पर परदे लगे हुए हैं।

और दुकान में कुछ लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

उन्होंने येलो कलर के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं।

इनके बाजू पर बाजूबंद भी बना हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे परदे से सजावट की गई है और इसमें लाइटें भी जलती हुई दिखाई दे रही हैं।

इस फोटो में बहोत सारे सोफे डले हुए दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग में बहोत सारी खिड़कियां भी दिखाई दे रही हैं।

भावना कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स का फोटो दिखाई दे रहा है।

साइड में बहोत सारे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

साइड में एक कच्चा रास्ता भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

ये एक साड़ी की दुकान है जिसमे बोहोत सारी साड़िया रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

और साइड में एक लोहे की रेलिंग भी लगी हुई दिखाई दे रही है।